यह एक मस्जिद की फोटो लग रहीं हैं जो की देखने में मस्जिद बहोत ही सॉफ्ट अच्छी लग रहीं हैं और इसके अगल-बगल बहोत ही अच्छा दिख रहा हैं।

यह एक बाजार की फोटो दिख रही हैं। पंजाब नेशनल प्राइवेट बैंक है और कुछ कारे भी यहां खड़ी हुई हैं।

यह एक मुझे मॉल की फोटो दिख रही है जहां पर बहोत अच्छी साफ सफाई है।

जूते कपड़ा मिलते है जो कि हमें पेहनने मे बहोत अच्छे और खूबसूरत लगते है।